इस तस्वीर में एक मिठाई का चुरा नजर आ रहा है।

दुकान के अलमारीयों पर बहुत सारे रंग बिरंगे सामान नजर आ रहे हैं।

उपर फैन भी दिखाई दे रहा है।

कई सारे कार्टून रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में चारो ओर हरियाली नजर आ रहा है।

छोटे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कमरे पर एक सफेद बिस्तर दिखाई दे रहा है।

दीवार पर एक पेंटिंग नजर आ रही है।

साइट पर एक आदमी झोला लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है।

दोनों साइड पर फूल पौधे का टब नजर आ रहा है।

एक बिल्डिंग जैसा कुछ नजर आ रहा है।

दीवार पर पर्दा दिखाई दे रहा है।

दूर में कुछ घरें नजर आ रही है।

एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बहुत सारे इंसान भी नजर आ रहे हैं।

दुकान पर बहुत सारे बुक्स कॉपियां नजर आ रही है।

बाहर छतरी लटकाया हुआ नजर आ रहा है।

रास्ते पर कई सारे लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दीवारों पर कई सारे फूल टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

पेट्रोल पंप पर कहीं सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर पर एक हाईवे दिखाई दे रहा है।

दीवार पर एक टी_वी भी नजर आ रही है।

रोड पर इंसान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग का रंग सफेद मिट्टी रंग का नजर आ रहा है।

एक छोटी मंदिर भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर पर एक फील्ड नजर आ रहा है।

तस्वीर के आगे कई सारे लोग नजर आ रहे हैं।

पिल पर कई सारे लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक आधा बाइक भी दिखाई दे रहा है।

घर की खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।